एक बरांडा दिखाई दे रहा है।

तीन चार बाइक भी दिखाई दे रहा है।

दो छोटी-छोटी सफेद कलर का मशीन भी दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा एल.सी.डी. दिखाई दे रहा है एक छोटा एल.सी.डी. दिखाई दे रहा है।

एक पानी का टंकी भी दिखाई दे रहा है तार भी दिखाई दे रहा है पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

प्लास्टिक का त्रिपाल भी दिखाई दे रहा है एक रिश्का भी दिखाई दे रहा है।

हरे-हरे झाड़ियां भी दिखाई दे रहा है।